ये फ्रॉक देखने मे बहुत ही सुंदर है फ्रॉक कलर बहुत ही खूबसूरत है ये फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आया।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

हजाम दुकान मे बहुत सारे आईने लगे हुए है बहुत सारे सामान रखे हुए है जो हजाम दुकान बहुत ही ज्यादा बड़ा है।

ये इस तस्वीर में एक बैंक नजर आ रहा है बैंक के नीचे बहुत सी मोटर गड़िया रखी हुई है वहाँ पे एक छोड़ा सा रास्ता है जहा से लोग जा रहे है।